यहां पर मकान --

खेल रहा है बिस्कुट बेच रहा है।

भी लगाया हुआ है ये घर व्हाइट कलर से पेंट है।

बहुत बढ़िया लाइट लगा हुआ है।

यहाँ पर दो पानी टंकी भी दिखाई दे रहा है दो घड़ी घंटा भी दिखाई दे रहा है।

और काउंटर बहुत दूर में बना हुआ है रंग-बिरंग --

उस बोर्ड पर लिखा हुआ आयुष्मान भारत।

प्रेस कर रहा है बहुत सारे कपड़ा।

पेट्रोल डिजल लेते हैं एक आदमी जा रहा --

दुकान में लगता है की सारे चीज पतंजली का ही मिलता है उस --

राम देव का पिक्चर भी है।

लड़की ब्लू कलर का कपड़ा पहने हुई है।